निकल पड़े है अपना ड्यूटी पे और यहाँ पे नौ बजने वाला है इसलिए निकल पड़ा है ड्यूटी है और चारो तरफ कलर सफ़ेद किया हुआ है।

ये माथल डैम है और काफी बड़ा डैम है और इसमें बहुत सारे मछली पकड़ने वाले ये भईया लोग जाल को इधर से उधर कर दिए है और यहाँ पे नांव से जाने वाले हैं।

सब फैंटास्टिक यहाँ पे डिजाईन --

और इसमें दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते है अब कॉलेज बंद।

ये रोड है और काफी बड़ा रोड है और इसमें ये भईयां --.

ये जिम सेंटर है और काफी बड़ा जिम सेंटर है और इसमें ये भईयां लोग--

पिज़्ज़ा वगेरा सब कुछ मिलता है यहाँ पे--